लोहे की सरिया का एक पिलर बना हुआ है।

यहां सामने एक रास्ता दिख रहा है जिसपे नारंगी और सफेद रंग की टाइल्स लगी हुई है सामने --

यह एक बड़ी सी झांकी है जिसके ऊपर पीले रंग का कलश रखा हुआ है।

और यहां पे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनमें से एक ने सफेद बनियान पहन रखा है दूसरे ने काला कुर्ता।

जिस पे हरे और आसमानी रंग की सीट लगी हुई है वहीं इसके साइड में एक सीमेंट का पोल बना हुआ है।

के पंखे भी दिखाई दे रहे है और सामने बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई है।

जिसके ऊपर लाल रंग का लोगो बना हुआ है जो की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बुक को --

यह किसी मॉल के अंदर का दृश्य है सामने एक काले रंग की रेलिंग दिखाई दे रही है।

यह किसी डिग्री कॉलेज की बड़ी इमारत है जिसमें आगे की तरफ कांच भी लगे हुए हैं।

के अंदर का मालूम होता है यहां पे सामने की तरफ एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

यहां सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

जिसके बगल में एक टीन सीट भी बना हुआ है।

जोकि काले रंग की बनी हुई है और उसके ऊपर गांधी जीकि एक सफेद प्रतिमा विद्यमान की गई है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं बैठे हुए लोगों के सामने कुछ सफेद रंग का रक --

उस पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और ऊपर की तरफ एक लाइट भी जल रही है।

जिसपे चारों तरफ टेबल रखी हुई है और टेबल के ऊपर सफेद और हरे रंग के --